पार्क के रास्ते पे एक लड़का और एक लड़की खड़ी है.

सामने दो तीन चेयर और एक राउंड टेबल दिख रहा हे.

ये वाले फल वाले सभी कोई दिख रहे हैं.

घाट को अच्छे से सजाया जाता सजाया जाता है ताकि छट वर्तियो को कोई प्रोब्लम ना हो।

फ्लोर को काट रहा है वॉल कटर का यूज़ कर रहा है.

और बाद में यहाँ पर फ्लो बनाया जाएगा।

इस्कूल को अच्छे तरह से डेवलप किया गया हे.

क्लास रूम को देख कर भी बोहोत अच्छा लग रहा है.

मंडप पे चारो तरफ से फूल लगा हुआ हैं.

जिसके गेट पे उर्दू में कुछ शब्द लिखे हुए हैं.

इस चित्र में एक दूकान दिखाया गया है जिस पर फूड ट्रैक लिखा हुआ है.

इस चित्र में एक वाटिका को दिखाया गया है जिसका नाम नंदन वाटिका लिखा हुआ है.

जिसमें एक व्यक्ति मछली बेचता हुआ दिखाया जा रहा है.

उसके ठीक बगल में एक तुलसी का पौधा बना हुआ है और अंदर में बहुत सारे प्लांट लगे हुए हैं.

इस चित्र में एक टर्मिनल दिख रही है.

और उनके पीछे कुछ चिकित्सा पंती लगाई हुई है पोस्टर के रूप में.

गेट के ऊपर नैंसी सेलून उसके बगल में दो दुकान जिसमें अमूल पार्लर और एक बोर्ड लगा हुआ है.

इस चित्र में एक गेरेज को दिखाया गया है.

रैक पे सामान भी रखा हुआ है.

इस तस्वीर में एक घर दिख रहा है.